फोन से फोटो खींचता दिखाई दे रहा--

यहां पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है।

वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई--

अए और नीचे यहां बहुत बढ़िया मंकी के फोटो लगी हुई है।

हरे रंग का और यहां पर शनि सैनी चौपाल सैनीपुरा सोनीपत लिखा हुआ है यहां पर ब्लैक रंग --

कैमरों के हैं यहां पर बड़े कैमरे हैं।

सब डिवीजन ऑफिसर्स यहां पर है वर्कशॉप यहां पे लिखा हुआ है मैकेनिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहां पर लिखे हुए है वन --

थेरेपी यहां चकरा हीलिंग डाउजिंग यहां सब कुछ किया जा--

इस फोटो में दिखाया है की यहां पर बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं ये एक कंपनी का सीन है।

कि यहां पर एक बड़ा सा मंदिर है जिसके गेट के नंबर चार है यहां पर एक लोहे का--

इस फोटो में दिखाया गया है कि--

पीछे की ओर दो आदमी कॉफी पी रहे हैं और अंदर एक आदमी कॉफी दे--

यहां रात का सीन है यहां पर एक लोहे का पाइप है और जिसके छत से यहां ब रंग बिरंगी लाइटे आ--

इस फोटो में दिखाया गया है कि यहां पर एक सा--